ये नदी दिख रही है पानी काफी ज्यादा साफ़ है पिछले फोटो में से इस ये नदी कुछ चेंज है।

पहाड़ है दूर एक दीवार दिख रही है जिसके आसपास कुछ छोटे छोटे से घर दिखाई नजर --